और यहां पे एक क्रेन दूसरी भी खड़ी हुई है।

और यहां पे बाल्टी भी रखी हुई है और यहां पे--

और यहां पे कांच का सामान भी मिलता हैं और यहां पे बहोत अच्छी अच्छी चीजें मिलती है।

ये एक बहोत बड़ी अच्छी दुकान है और यहां पे बहोत ज्यादा सामान मिलते है यहां पे कंपुटर भी रखा हुआ है।

यहां पेन भी मिलते हैं यहां पे एक आदमी टोपी ओढ़ के बैठा है।

और यहां पे कंपूटर भी बहोत ज्यादा रखे हुए--

पंखा भी लगा हुआ है यहाँ पे मैगी भी मिलती है यहाँ पे चाउंर भी मिलते है।

और यहाँ रेट कतइ सस्ते मिलते हैं बरे--

और यहां पे बहोत ज्यादा कागज रखे हुए हैं।

सब कुछ मिलता है यहां पे बहोत बड़ी बड़ी टाईल लग रही है।

और यहां पे सी_सी_टी_वी कैमरे लग रहे है।

ये एक बोहोत बड़ा जंगल है यहां पे बोहोत बड़े बड़े पेड़ हो रे है।

और यहां पे बहोत बड़े बड़े जंगल के पेड़ है।

और यहां पे रेल की पटरी जा रही है और यहां पे काली कलर का डब्बा खड़ा हुआ है।

और बहोत बड़े बड़े मोरे भी लग रहे हैं यहां पे।

ये एक बहोत बड़ी दुकान है यहां पे एक आदमी सफेद बु शर्ट पेहर के खड़ा है।

यहां पे दो टाय टायर है बड़े बड़े।

और यहां पे एक जंगला भी है और यहां पे एक दरवाजा भी है।

और यहां ए_सी लगा हुआ है बड़ा सा--

और यहां पे बहुत ज्यादा पोस्टर लगे हुए हैं।

और यहां पे बहोत बड़े बड़े मंदिर भी है।

और यहां पे एक लेडीज मच्छी बेच रही है एक आदमी --

और यहां पे दो बच्चे ट्रेन की बाट देख रहे हैं।

ये एक बहोत बड़ी दुकान है बू--

यहां पे एक बहोत बड़ी मेज लगी हुई है।

यहां पे बहोत अच्छी अच्छी दुकान भी है यहां पे एक गाडी भी खड़ी है।